यहां बहोत सुंदर सजावट की गई है।

पीछे बहुत सारे घर हैं।

और पेड़ भी यहां बहोत सारे लगे हुए हैं।